यहाँ पे मेरे को बहोत अच्छा गार्डन सा टाइप का दिख रहा है यहाँ पे बहोत ही हरयाली ही हरयाली कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पे बहोत सारा यहाँ पे घास-फूस भी अच्छी लगी हुई है यहाँ पे बहोत अच्छी डिज़ाइन में दो पेड़ भी लगे हुए है।

कुछ इस साइड भी दुकान है दोनो साइड मे गेट भी लगे हुए है कुच लोग भी खड़े हुए है वहा पर कुछ महिलाएं भी शायद अंदर से दिखाई दे रही है यहा पे कुछ बलून्स भी लगाए-- ।

यहाँ पर मेरे को गार्डन टाईप का दिखाई दे रहा है बहुत सारे पैड पौधे दिखाई दे रहे है गार्डन मै बहोत सारी हरियाली दिखाई दे रही है और यहां पे कुछ कुवे टाईप का बना हुआ है उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां भी लगाई गई है आगे भी सीडिया लगाई गई है उपर जाने के लिए पैड़ पौधे का अच्छा मिश्रन किया गया है।

जितने स्पीड मे हम दौड़ सकते हैं उतनी स्पीड भी लगा सकते हैं यहाँ पे बोहोत अच्छी सुविधा उपलब्ध है भगवान की फ़ोटो भी लगायेंगे इस जिम मे--

और इस जिम में वो ब्लैक कलर में मशीन लगी है कुछ व्यक्ति जिम कर भी रहे है कुछ व्यक्ति जा रहे है अच्छा शोकेस बनाया गया है ऊपर फैन भी लगाया गया है लाइट्स भी की गई है यहाँ पे जिम से हमारा स्वस्थ शरीर रहता है और विभिन्न प्रकार की ताकत मिलती है और हमें अपना शरीर प्रदान होता हैं।

हॉस्पिटल आकर वो अपना इलाज कराता हैऔर यहाँ हॉस्पिटल मे इलाज चालू करके डॉक्टर लोग उसको स्वस्थ बना देते है।

ये कमल वाशिंग हाउस ड्राय क्लीनर्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ब्यूटी पार्लर दिखाई दे रहा है।